सामने एक रोड पर चा चार-पाँच ऑटो खड़े हुए हैं।

दो पर्दे टंगे हुए एक कुर्सी रखी हुए है और कुछ में टेबल वगैरा हैं।

सामने एक कोई सा है उस पर एक मूर्ति छपी हुई है कोई आदमी की।